यहाँ पे मुझे एक देवी मंदिर का गेट दिखाई दे रहा है जिसपे श्री जय मदारन की देवी प्रथम द्वार लिखा हुआ है।

यह एक मंदिर दिखाई दे रहा है जोकि सफ़ेद कलर से है और इसके चारो तरफ मुझे बाउंड्री भी दिखाई दे रही है जोकि सफ़ेद कलर से कलर हुई है।

और इसके शाखा का जो द्वार है वो काले कलर का दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर छत भी दिखाई दे रहा है जोकि बहोत अच्छा है।

यह एक माल का बहोत ही सुन्दर सा दृश्य है। यहाँ पे मुझे एक महिला सुग्गा कलर की --

हैंडवाश भी दिखाई दे रहा है और फर्श भी बहोत अच्छा सजाया गया है और इसके पास में मुझे --

अ इसके डॉल भी बोहोत अच्छे से कलर किया हुआ है।

यह एक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की शाखा है जोकि भारत की सबसे बड़ी सरकारी शाखा है। यहाँ पे दो लोग दिखाई दे रहे हैं।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

चार पांच कववे भी बैठे हुए दिखाई दे रहे है जोकि कववे काले कलर के हैं।